इस इमेज में मुझे गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है और यहाँ पर चारों तरफ सजावट हो रखी है वो दिखाई दे रही हैं कुछ लाईटें जल रही हैं वो दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में मुझे कुछ गड़ियाँ दिखाई दे रही है जो की खराब गाड़ियाँ हैं सामने वो दिखाई दे रही है जिसका कलर काला है एक सफ़ेद गाड़ी दिखाई दे रही है और यह पे कोई नीला कलर का बॉक्स रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

हां पार मुझे लाल कलर का कारपेट दिख रहा है यहां मुझे हरे कलर का कारपेट दिख रहा है यहां पार मुझे रंग बिरंग पर्दे देख रहा हूं डेकोरेशन की गई है कुछ लोग यहां बैठे हैं मैं देख रहा हूं ।

इस इमेज में मुझे एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है और यहाँ मुझे एक लोहे की ए वो दिख रही है एंगल जिस पे मुझे एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है।

ये बिल्डिंग की कुछ खिड़कियां दरवाजे मुझे नजर आ रहे हैं जो खिड़कियां है वो कांच की है और इसके अलावा मुझे बगल में एक छोटा ऑफिस और दिख रहा है।